और ईंट से घेराया हुआ एक बाउंड्री दिख रहे है और एक पेड़ दिख रहे है और तीन ठो कार दिख रहे है वो खिंचा हुआ है .

और एक आदमी पैदल चल रहे है और उसके आगे मे एक पक्का का मकान जैसे दिख रहे है खिड़की और पक्का का मकान पूरा है और सड़क सड़क के बगल मे बहुत ही कचरा फेंकाया हुआ है और पेड़-पौधा दिख--

पेड़ पौधे दिख रहे है बहोत ही लम्बे-लम्बे एक आइ_एस स्कोर पे से--

मुझे इस तस्वीर में एक फोटो दिख रहा है। .

एक बहुत बड़ा पक्का का बकान बन रहा है दोपहर का समय है। एक परसल और एक हीरोहौंडा गाड़ी है उसके बगल में और एक ठो गाड़ी है। .